यह एक स्टेसन की पिक्चर है यहां पर आप देख सकते है हमारा रास्टीय धवज भाई लहराता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा।

कुछ खिलाड़ियो ने रेड कलर के कपड़े पहने कुछ खिलाड़ियो ने येल्लो कलर के कपड़े पहने है। कुछ खिलाड़ियो ने ऑरेज पहना है कुछ खिलाड़ियो ने रेड एण्ड ब्लैक में मिक्स पहना हुआ है।

यहा पर आप ग्राउड में देख सकते है की कितने सारे लोक खड़े हुए है कुछ लोगो ने वाइट कलर शर्ट पहनी है।

छे सात हिरन दिख रहे होंगे आप लोगो को साथ में यहां पर तार से फेंसिंग की गई है आप लोग देख सकते है की हिरन बाहर न निकल--

यहाँ आपको एक होटल की पिक्चर दिख रही होगी जहाँ पर एक वाइट कलर की कार खड़ी हुई है जिसके पीछे रेड कलर की लाइट जल रही दिख रही होंगी आपको--